ये एक रेलवे प्लेटफार्म है। यहां पे एक बेंच पे एक औरत बैठ के ट्रेन की राह देख रही है।

के परांठे शायद मेथी के है जो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं।

यहां पे कुछ ब्यूटी के सामान भी दिखाई दे रहे है।